दिखाई दे रहा है गार्डन की डेकोरेशन करि हुई दिखाई रही है मैन गेट पे कुछ कैंडल्स जली हुई दिखाई दे रहा है दोनो सैडिया पर कुछ पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है अंदर ए यहाँ पर कुछ लाइटिंग लगी हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक स्कूल दिखाई दे रहा है स्कूल कि गेट खुला हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर कुछ पेडे लगे हुए दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है ग्राउंड में कुछ लगी हुई दिखाई दे रहि है यहाँ पर सूर्यदेव की ए धुप पड़ती हुई दिखाई दे रहा है यहाँ पर बड़ा खम्बा लाइट वाला लगा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर पीछे बड़े बड़े एम्म पेड़ लगे हुए --

यहाँ पर एक स्टेज सजाई गयी है जहाँ पर अ फूलों की डेकोरेशन की गयी है यहाँ पर कुछ कैमरे रखे हुए दिखाई दे रहे है।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

यह पर बड़े बड़े कमेरे लगे हुए दिखाई दे रहे है पीछे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई दिखाई दे रही है।

पर एक फर्स पर टाइल्स लगे हुए दिखाई दे रहे है जहा पर बीच मे एक पेड लगा हुआ दिखाई दे रहा है।